ये एक के_एफ_सी रेस्टोरेंट है जो कि खुला हुआ है वहां पर के_एफ_सी रेस्टोरेंट बोल के लिखा गया है।

अभी पूरा हुआ नहीं है जोकि दिख रहा है।

ये एक स्कूल की तस्वीर है जहां पे बच्चे क्रिसमस के समय कुछ परफॉर्म कर रहे हो और बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं।

ये तस्वीर कहीं की है जहां पे कुछ बंदे टूरिस्ट के लिए गए हैं।

यह गराज का तस्वीर है जहां पे एक गाड़ी को ठीक किया जा रहा है।

उसके सामने ही हमें देखने को मिल--

वेंटिलेटर है लाइट एक जल के है और नीचे में कुछ--

जो रंग बिरंगी कपड़े पहन के आए हैं।

पीछे में हमें सफेद कलर का कर्टन देखने को मिलता है।

एक बंदा जो कि पोडियम के सामने खड़ा हुआ है। एक साउंड बॉक्स देखने को मिल रहा है।

ये तस्वीर एक स्कूल का है जहां में बच्चे आर्ट की प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं।

हमें यहां में बहोत बड़े बड़े पिलर देखने को मिलता है।

बड़े बड़े पिलर को भी देखने को मिलता है साथ ही उसके सामने ही हमें गच्ची देखने को मिलता--

ये एक फैक्ट्री है जहां पे वीविंग का काम चल रहा है।

यहां पे हमें छोटे से मशीन देखने को मिलता है जो की लोहा का है।

ये तस्वीर एक पॉर्लर का है जहां पे एक लड़की बैठा हुआ है।

पाप्या में क्यू_आर कोड भी देखने को मिल रहे हैं सैनिटाइजर देखने को मिल रहे हैं।

एंटीना से देखने को मिलता है बगल में ही हमें एक बड़ा सा दीवार दिख रहा है।

छोटा सा पौधा बीच में उग के है।